मार्केट में हमें सब चीजें उपलब्ध रहती हैं। कुछ भी हमें चाहिए होता तो हम मार्केट में जाते हैं और यहां पे हमें हर चीजें मिलती आसानी से मिल जाती है जो कि --

मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां हर व्यक्ति जाना पसंद करता है तीर्थ यात्रा पे जाना पसंद करता है।

किराना आइटम है यहां पे पानी गोल्डिंग बच्चों के आइटम्स पैमपो फ्रेश जो भी तमाम चीजें होती हैं किराना के स्टोर पे ही हमें मतलब मिलती हैं।

किराना के स्टोर पे जहाँ हर चीजें हमे जरूरत से चाहिए वो सब पूर्ति हो सकती है। यहाँ पे बच्चों के खाने पीने की --

इसलिए कार पार्किंग या स्कूटी पार्किंग कुछ भी होता है तो हम अपनी गाड़ी पार्किंग में ही लगाते हैं।

डिश लग रही है जो देखने में बहुत ही आकर्षक है और देखते ही देखते हर व्यक्ति इसमें खाना चाहेगा इसको। यह इसको बहुत ही अच्छे से सजा के दिया है जिसपे स्पून अ फोक दोनों ही लगे हुए हैं या स्पून से खाइये या फोक से खाइये।